दुकान का सामने पोस्टर लगा हुआ है कांच का गेट है।

लोहा का रेट से घेरा हुआ है ऊपर में लाइब्रेरी --

स्कूल है स्कूल में बहोत सारा बच्चा लोग बेंच मे बैठा हुआ है।

पीछे बड़ा बड़ा खिड़की बना हुआ है खिड़की में रड लगा हुआ है।

घर के ऊपर पोस्ट ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है और एक लेटर बॉक्स भी टंगा हुआ है इसका रंग लाल रंग है।

एक स्टेडियम है स्टेडियम अल्बेस्टर से घेरा हुआ है सीढ़ी बना हुआ है।

लोग बैलून चिपका रहे हैं बांस में पीछे सामने ग्राउंड है।

एक रूम में उसका अंदर भी पूरा कचड़ा है उसका बाहर में एक ठो बैनर लगा हुआ है आसपास में पूरा झाड़ी लगा हुआ है।